और सब बहुत सारी पेड़े और हरियाली भी है और एक काला गेट भी दिखाई दे रहा है और आसमान नीला है।

उसके बीचों बीच एक सड़क बनी हुई है।

और आसमान नीला पेड़ों के बीचों बीच हरियाली के बीचों बीच बहुत सारे हवाई जहांज भी खड़ाई गई हैं।

चित्र में हम खाली मैदान देख सकते हैं जहां इसमें थोड़ी-थोड़ी हर-हर हरी हरा काफी और भूरा रंग दिख रहा है।

यह चित्र मे हम एक सड़ा मैदान देख सकते है जहा स जो की खाली है।

और बहुतसे लाइटे भी भूरे रंग के चमक रही है और काला परदा भी लगाया गया है।

रखा हुआ है और उसके ऊपर काला काली छत्त काली रंग की छत है और बहुत सी शीशे मे देखेंगे तो बहुत सी कारे खड़ी हुई --

चित्र मे हम चारों और हरियाली और पेड़ देख सकते है और एक सड़क भी दिखाई दे रही है जो की भूरे रंग कि है।